सुग्रीव का भी मुखौटा है| इसको लोग रामलीला में यूज करते हैं |

यह चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन है। यहाँ के लोग नखलऊ दिल्ली कानपूर पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं क्योंकि एक बस स्टैंड का अड्डा है।